जैसे की एप्पल और मोसंबी दिखाई दे रहा है।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

बहुत बड़ा जिम दिखाई दे रहा है।

स्कूल दिखाई दे रहा है जिसका नाम--

बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

और कुछ बड़े बच्चों के साइकिल मिलते हुए नजर आ रहे हैं।

पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

किताबों की दुकान नजर आ रही हैं।

स्कूल बसेस खड़ी हुई नजर आ रही है और बसेस के पास--

लगे हुए नजर आ रहे हैं।